यहाँ देख सकते है किड क्लास है यहाँ पे जो बच्चे है छोटे-छोटे वो एक्सरसाइज कर रहे है डांस सिख रहे है |

रखा गया है बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है काफी आकर्षित लग रहा है देखने मे |

पेंटेड है अच्छा कलर युस किया गया है यहाँ पे ढ़ेर सारे बाइक बाहर लगे हैं गेट पे और बाहर का जो सड़क है --

इ देख सकते हैं काफ़ी बिल्डिंग के अंदर का काफ़ी खूबसूरत --

और लम्बे-लम्बे वृक्ष है जो कि काफी --